यह खेत में धान की रोपाई हो चुकी है आदमी इसमें खाली जगह में मछली पकडने के लिए घुसा है जो की नेट के उस पार आदमी घुस चूका है खेत में।

यह फ्लैट में सभी प्रकार की रूम मिलती है। यहां पर पर सभी रूम में लोग रुके भी है यह सभी रूम में ए ए.सी. लगा हुआ है। हम पर्किंग की यहाँ पे अच्छी सु--

और यह कैफ़े देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और यह कैफे में चार-पांच पंखे भी लगे हुए हैं तथा सी.सी.टी.वी. कैमरे भी यहाँ पे लगे हुए हैं।

यह दृश्य एक दुकान की है यहाँ पे कॉपी कलम बैग --

यह दुकान में तीन-चार बैग दिख रहें।

हम बहोत सारे गाड़ी आके यहाँ पे पेट्रोल और डीजल भरवाने का कार्य करते हैं।